यहां पर नीचे कुर्सी भी लगी नजर आ रही है और यहां सामने कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में सामने यहां पर एक गैरेज दिखाई दे रहा है।

यहां पर आर_के मोटर्स लिखा नजर आ रहा है अंदर यहां पर एक कार भी दिखाई दे रही है।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

जहां पर कुछ लड़के क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं यहां पर सीढ़ी भी दिखाई दे रही है।

जिस पर दो व्यक्ति बैठे नजर आ रहे हैं यहां पर दीवार पर भारतीय स्टेट बैंक का पोस्टर भी लगा दिखाई दे रहा है।

जहां पर एक बच्ची को प्राइस मिलता नजर आ रहा है और यहां पर दीवार पर --

और यहां पर ऊपर लाइट्स भी जलती दिखाई दे रही है।

जहां पर अंदर कुछ लोग बैठे हैं बाहर यहां पर हरे रंग का डस्टबिन भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में सामने यहां पर मंदिर दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ लोग खड़े है।